फोटो में किसी महल की गैलरी दिखाई दे रही है जिसमे खंबे लगे हुए हैऊपर लाल हरा कलर दिखाई दे रहा है।

सामने बाल्टी बकेट डब्बे रखे हुए है और एक फूल माला भी नजर आ रहा है सामने से रोशनी दिख रही है।

इसमें पानी भरा हुआ है आस-पास मिट्टी की खुदी हुईं कच्ची जगह है बाउंड्री पर पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं बीच में एक खंबा भी लगा हुआ --

उसके के पीछे एक बिल्डिंग और एक लाल कलर का शर्ट पहने हुए ल --

हाथ मने अ जिसके मुँह में कुछ कर रहा है अपने हाथ में एक नीले कलर का कुछ पकड़ के रखा हुआ है पीछे पेंटिंग सलवार ही दिख रही है नीचे का फर्श लाल सफेद रंग का है।

और ऑटो रिक्शे के पास में एक मोटर साइकिल खड़ी हुई है पीछे दुकान दिखाई दे रही है जिसमें एम.आर.एफ. टायर प्रिंट और बोरियां रखी हुई है।

दो आदमी खड़े हुए हैं ऊपर कांच और लाइट दिख रही है | एक दुकान का एंट्री गेट सा नजर आ रहा है ।

थाली रखी हुई है उसमे दो लोटे रखे हुए है पानी रखा हुआ है घंटी त्रिशूल और फूलों से सजे हुए है भगवान जी का मंदिर है पीछे की दीवाल का कलर नीला और छत काला दिख रहा।